गेट का है ये और एक मेट हरी रंग की मेट नजर आ रही है।

देखने के लिए यहा पर बहुत से चावल चावल है और यहा पर हरे नीले पीले --

ओपो बिस्किट शैम्पू बोलोशन और वह पर बहु बहुत सारे आइटम वगेरा लगे हुए हैं वह पर तेल भी मौजूद हैं।